यहां एक रेलवे स्टेशन का दृश्य हैं इस रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी रेलवे ट्रेक्स है।

उसके बगल में एक बिजली का पेड़ बिजली का पोल है और ये आदमी खड़ा है।

बगल में दो ब्लू डस्टबिन है उसके बगल में ब्लू कलर का ड्रम है ऊपर में बहुत सारे पाइप और वायर्स पार हुए हैं।

एक शटर के रैक में चार बॉटल्स रखी गई है नीचे में ब्लू कबर्ड वगैरा है।

पीछे में एक ब्लू कलर का कुछ शेड की तरह बनाया हुआ है उसके पीछे मैं बहुत सारे बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ हैं।

यहां एक दुकान है जिसमें की चॉकलेट्स भी बिस्किट्स और भी बहोत सारी आइटम्स रखी हुई है।

पीछे में एक ग्रिल भी है जो कि बंद है पूरी तरह से रेड कलर में ओ यस है ग्रीन कलर में लेज है।

बगल में दो शेड नजर आ रही है।

सामने में कुछ लड़कियां है जो की डांस वगैरा कर रही है।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

पीछे में एक घर है जो की लाल रंग का उसका पिलर है।

इसके बगल में सिल्वर कलर का गाड़ी है।

अंदर में दो दुकानें दो लोग बैठे हुए हैं एक आदमी खड़ा है एक आदमी बैठा हुआ--

इस चित्र में एक रूम का दृश्य नजर आ रहा है।

यह एक रूम का नजारा है जहां पर की बाहर में वाइट कलर के कपड़े में एक ग्रिल के बाहर खड़ी है एक औरत।

अगर मैं अपने हाथ के नीचे तराजू रखे हुए--

बहुत सारे बच्चे चेयर पर बैठे हुए हैं जोकि टेबल पर रख के अपना किताब पढ़ रहे हैं।

इसमें एक गेट है जो कि खुला हुआ है उस गेट पे एक जो रेड कलर का सर्ट पहने हुए आदमी है।

उधर एक गेट है जो कि बंद है और बाहर में बहुत सारा हरा भरा घांस धुंस और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

दो आदमी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं अपने हाथों एक मशीन लिए हुए नीचे में दो शटर है और एक गली है अंदर जाने के लिए वहां पे बॉटल भी रखा हुआ है।

तीन गाय व्हाइट रंग की है और एक गाय ब्लैक कलर की है।

कुछ लोग हैं जो की चलते हुए नजर आ रहे हैं और एक पेड़ भी बनाया हुआ है पेड़ की चारों ओर ई लोग प्रतिमा कर रहे हैं।

यह एक फील्ड का दृश्य है जिसमें की एक ब्लू कलर का कार नजर आ रहा है उसमें बहुत सारी बड़ी छोटी सारी तरह-तरह की गाड़ी लगाये हुआ है।

इधर बाउंड्री दिया हुआ है बाउंड्री के अंदर बहुत सा हरा हरा पेड़ है।